यहां पे ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम होता है जहां पे कि जो अह संगीतकार है।

यह सिंगर वो यहां पे आके अपनी आवाज को देता है इस माइक पे जहां पे की इस माइक को फिर से अ एडिट करके उसकी आवाज को --

यहां पे कि नीचे एक पानी का छोटा सा सोर देखने को मिल रहा है बाकी सारे जगह से--

और यहां पे एक कस्टमर भी यहां पे खरीदने आये है।

उनका यहां पे एक हॉस्पिटल का चित्र देखने को मिल रहा है जिसको हम--

अ फेस का साफ करने के लिए आते है यहां पे एक रूम भी देखने को मिल रहा है यहां पे कैमरे भी लगे गए है लाइट भी है।

बहुत प्रकार के बच्चों के खेलने का सामान जिसे गुब्बारे हो गए कुछ छोटे बैट और बॉल फुटबॉल सो गए--

यहां पे एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे कुछ चीजें लिखी गई है जहां पे एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाया गया है।

ये चित्र एक डैम का चित्र है जहाँ पे की--

यह सीत्र में एक पेट्रोल पंप का चित्र देखने को मिल रहा है जहां पे की--

और कई प्रकार के आधुनिक मशीनस भी इस तस्वीर में है।

ये एक क्लास रूम का चित्र देखने को मिल रहा है।

के ड्रम को बजाते हुए भी आ रहे हैं।

मे ताला लगाया गया हुआ है।

यहां पे उसके साइड में भी और दो दुकान देखने को मिल रहे हैं।

ये एक शॉपिंग मॉल का चित्र देखने को मिल रहा है जिस चित्र में कुछ--

व्यक्ति बहुत खूबसूरत से बना रहा है जहां पे की एक साइकिल --

अपने हेयर को कट करने के लिए आते है।

यहां पे एक रेत का परत भी यहीं पे देखने को मिल रहा है।

और ये वे एक बहुत सुंदर जगह है।

यहां पे एक पेट्रोल पंप का चित्र देखने को मिल रहा है जिस पेट्रोल पंप --

और उनके हाथों में किसी के प्लेट है तो किसी के कुछ रखे गए हैं और यहां पे एक शादी का फंक्शन हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहने में--

और ये सब चीजे काफी ज्यादा सुंदर देखने को मिल रहा है।

जहाँ पे कि कुछ गेंडु के फुल अह ऑरेंज कलर के येलो कलर के बगीचे में लगाए गए हुए हैं।

जिस वैली के न नजदीक में है एक--

और भी कई प्रकार की चीजें इस जगह में मिल जाती है जैसा कि यहां पे एक रास्ता भी पड़ा है।

सफेद कलर के वहीं पे पड़े हैं इस टायर को जो बॉडी बिल्डर है वो उस टायर को उठाने में--